बुक बुक वाली शॉप बाहर की और कुछ कैलेंडर्स टंगे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं बुक्स ले रहे --

पत्तियाँ पत्ते ले कर बाहर की और बैठे हुए हैं जोकि बेच रहें --